और इ में बहुत सारा खम्बो लगाबल बा | आसमान में रउआ लोग देख तानी।

अ दोनों के ऊपर ऊकर हेलमेट रखल बाटे।

नइखे लउकत यह जगह तमको देखनो नइखे लागत ऊपर लड़की ओ सा रखल बाटे।

आवरी बहुत रंग के फुल बाटे औरो घास वास के नोनी नोनी खूब सुन्दर सुन्दर बाटे।